घर में कुर्सी है टेबुल है घर में रंग किया हुआ है पेंट भी किया हुआ है टीन टीन है ऊपर में दिया हुआ गाछ है गाछ सब सब पेंट किया हुआ है।

यहाँ एक बड़ा सा मैजिक लगा हुआ है मैजिक के ऊपर में एकठो गाड़ी है गाड़ी में बल्ब लगा हुआ है झंडा है मैजिक चारों तरफ से घिरा हुआ है बहुत सारा बाल जला हुआ है शहीद अब्दुल हामिद चौक लिखा हुआ है बहुत सारा बल्ब हैं घर है।

फील्‍ड में बहुत अच्‍छा-अच्‍छा गाछ है पेड़ लगा हुआ है जंगल है बहुत हरा-भरा जंगल है।

यहाँ एक नैनो कार है।

यह एक बहुत के अगल बगल पौधा लगा हुआ है और झंडा में घर भी है को बहुत अच्छा से सजाया गया है।

बहुत बड़ा सा बगीचा है पुल के पुल का पानी बहुत ही अच्छा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

ऊपर में पहाड़ है पहाड़ के अंदर में एक मंदिर है जिसमें भैया लोग पूजा करने जा रहे हैं हाथ में एक भैया के हाथ में एक मोबाइल है जो पिक फोटो ले रहे हैं मंदिर पहाड़ पत्थर के नीचे में --

यहाँ बस स्टेशन है जहाँ यहाँ पर बहुत सारा टैक्सी लगा हुआ है पास में बहुत सारा घर भी है पेड़-पौधा है कुछ लोग भी हैं फील्ड भी बहुत बड़ा है घर भी बहुत अच्छा --